और यहाँ पे लड़के फूटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे है जिनमे सबने वाईट और ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है।

जिसके अंदर एक लड़का नीली कलर टी-शर्ट पहने हुए दोनों हात को चट्टान को छूते हुए खड़ा हुआ है।

'' जिसमे कई छोटी बड़ी बिल्डिंगस और दुकान बनी हुई है यहा पर बहुत सारे बोर्डिंग्स लगे हुए है यहा पर एक व्हाइट कलर की कार भी खड़ी है और कुछ लोग भी दिख रहे है। ''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

यह हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक हॉस्पिटल के अंदर की है यहा पर बहुत सारे नर्स और डॉक्टर टेबल के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

भीड़ इकट्टा करके खड़े हुए है ये लोग एक त्यौहार मना रहे है जिसके उपर उसके साइड मे एक बिजली का खंबा है जिसमे तार लगे हुये है।

यहाँ हमारे स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक इमारत की है जो एक पहाड़ जैसी लग रही है।

पर इस पहाड़ पर एक डिटेलिंग करी गई है और यहाँ पे कुछ लोग फोटो लेते हुए दिख रहे है जिनमे से एक लड़के के हात मे एक छोटासा बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

रोड पर से निकलती हुई गाड़ी जिनके ऊपर लोग बैठे है वो भी दिख रहे है यहाँ स्कूटर बाइक लोडिंग ट्रक ऑटो जैसे वाहन है।

यहाँ इस स्क्रीन पर हमे एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक घर की हैं घर के एक कमरे की है जिसमे बहुत सारी तखाले बने हुए है और बहुत सारे दीवाल पर फ्रेम लगे हुए हैं।

यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो घर के पीछे की है इस घर का गेट खुला हुआ है।